इमेज को देखकर हमको ऐसा लग रहा है जैसे शादी हॉल हो सिविल वॉर टाइप सारी कुर्सी सफ़ेद कलर की और विंडो ब्लू कलर की है।

एक प्लस का निशान लगा हुआ है यहाँ पर बोहोत सारे पेड़ लगे हुए है एक एम्बुलेंस खड़ी हुई है यहाँ पर एक अल्टो खड़ी हुई है इसमें हॉस्पिटल में व्हाइट कलर का पेंट बोहोत --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

एक टेंपू रखा हुआ है बगल मे दुकान दिखाई दे रही है देखने मे बहुत अच्छी दुकान लग रही है बोहोत अच्छा पैंट लग रहा--